पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है उसके बगल में एक और पौधा बड़ा दिखाई दे रहा है।

हरे रंग का एक पर्दा दिखाई दे रहा है जिसमे दुकान लगी हुऐ है।

छोटा जार दिखाई दे रहा है बेड दिखाई दे रहे हैं डस्टबिन दिखाई दे रहा है गैस दिखाई दे रहे हैं गैस चूल्हा दिखाई दे रहा है।

कान में एक शटर लगा हुआ जो हरे कलर के हैं।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

उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे और दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है।

सामने दो पुलिस बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे एक और पुलिस दिखाई दे रहे हैं।

हिंदी से आगमन लिखा हुआ है बगल में हवाई जहाज का एक फोटो दिखाई दे रहा है।

सामने एक लकड़ी का पौधा हुआ बना जैसा आकार दिख रहा है।

तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे घना दिखाई दे रहे हैं उसके बगल में पानी का रंग काला दिखाई दे रहा है।

का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें दो बेड लगे हुए हैं।

घर दिखाई दे रहा है जिसके स सोफे पर छः आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं हाथ में उसके किसी के हाथ में डमरू है किसी के हाथ में ढोलक है।

लाइट लगे हुए हैं शीशे का घर दिखाई दे रहा है।

ड्रम दिखाई दे रहा है जो नीला कलर का है उसके बगल में एक छोटा हरा कलर का डब्बा दिखाई दे रहा है।

पीलर ढालते हुए दिखाई दे रहे है उसके पीछे बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है।

गेट के सामने बहुत सारे व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

अपने काउंटर पर टेबल पर प्लेट रखा हुआ है उसके सामने फोन रखा हुआ है।

हमें एक गाड़ी दिखाई दे रहा हैं जिसका बैरिगेट उठा दिया गया हैं।

बगल में गैस का सिलेंडर दिखाई दे रहा है।

बगल में बहुत सारे लोहा दिखाई दे रहे हैं काट दिखाई दे रहे हैं।

एक लेडिस बीच लाइन में खड़ी हैएक साइड में खड़ी है।

सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर का रंग सफेद है।

घर का रंग सफेद है घर में पाइप लगा हुआ है।

सामने एक और बच्चा है अंदर दो व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हाथ में पत्तल दिखाई दे रहा है।

पीछे झरने जैसा दिखाई दे रहा है महादेव दिखाई दे रहे हैं त्रिशूल दिखाई दे रहा है डमरू दिखाई दे रहा है।

दो बच्चें दिखाई दे रहे हैं दोनों ब्लैक कलर के जैकेट पहने हुए हैं फोटो में।